उस शोप के सामने एक आदमी बैठ है एक न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और दिन का समय दिख रहा है शोप में और बहुत सारे जो किताबे भी रखी हुई दिख रही हैं। कुछ बोटलें रखी हुई दिख रही हैं।

बिल्डिंग दिख रही है| उसका कमान दिख रहा है| अंदर की तरफ जानते हुए का और वहा पे (पर) बहुत सारी डेकोरैशन किया हुआ दिख रहा है| वहा पर उस पे (पर) बोर्ड लगे लाइटिंग लगाई हुई है अलग-अलग प्र कलर की।

स्कूल का है दिख रहा है और क्लास रूम उसमे उम-लोहे के उम-जो डेस्क ब दिख रहे हैं।

इक बाहर की जगह दिख रही हैजहाँ इशूकरिष्काम म-जो एक पुतला मूर दिख रही है ऊपर की तरफ वह पे जो है नीचे--

दिख रहा है। रात्री का समय दिख रहा है। चर्च को बाहर से देखो क्या दिख रहा है। लाइट का फोकस चालू है रात्री का अंधेरा भी दिख रहा है। वहाँ पर स्टार भी ल चाँदनी लगाई हुई दिख रही है।

अ स्कूटर खड़ी दिख रही है मोटरसाइकिल खड़ी दिख रही है वहाँ पे दो लड़के खड़े दिख रहे है एक सिक्योरिटी गार्ड भी दिख रहा है | वहाँ पे एक मीटर भी दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं और कुछ इमारतें भी दिख रही है बाहर की तरफ से पीछे और आसमान दिख रहा है दिन का समय है।

यहा पे जो है कुछ औरते दिख रही हैं सफ़ेद कलर की साड़ी में और उन्होंने मास्क पहने हुई हैं अ एक हॉल दिख रहा है। वहा पे ना कुछ अ रंगोली बनाई हुई हैं। उन्होंने एक भगवान की--

वहा पे (पर) गार्डन जैसी जगह दिख रही है| वहा पे (पर) कुछ बच्चे गद्दे पर बैठे हुए है| कुछ लड़कियां बैठी हुई है ओ कुछ पेपर पे ड्रॉइंग निकालती हुई नजर आ रही है।

स्कूल के बाहर जो कुछ बच्चियाँ बैठी हु अ--जाने आने की जगह होती है| वहा पे कुछ खिड़कियां दिख रही है| वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हुई है अलग-अलग ड्रेस मे उन्होंने--

हॉल मे कुछ औरते बैठी हुई नजर आ रही हैं। अ व वहां पे दीवारों पे कुछ फ्रेम वगेरा और कुछ डेकरेशन किया है लगाया हुआ है।